ये एक ऐसी तस्वीर है जहां पर किसी मकान का काम चल रहा है यहां पर कुछ बेलदार --

इसमें बहोत सारे आदमी इधर-उधर घूमते हुए नजर आ रहे हैं जिसपे औरते भी में शामिल है और बच्चे भी है और आदमी भी है।

ये एक खेत और रोड की तस्वीर नजर आ रही है इसमें खेत में--

इसके लिए पिकअप गाड़ी में लगा हुआ है इसके जस्ट पास में एक बाइक खड़ी हुई है जो की काली कलर की है और ये बाजार के बीचों बीच खड़ा हुआ है।

ये एक ऐसी जगह की फोटो है जहां पर बहोत सारे कट्टे रखे हुए हैं कुछ कट्टे सफेद कलर के हैं कु --

पीले कलर के है इसमें कुछ आदमी है जो कटु को सर पर रखकर एक पिकअप गाड़ी है सफेद कलर की उसमें रखने जा रहे है।

दुकान के बाहर की फोटो है जहां पर एक दुकान नजर आ रही है वहां पर झालर से डेकोरेशन की हुई नजर आ रही है।

दारू के ग्लास रखे हुए हैं और कुछ टी के कप रखे हुए हैं जोकि व्हाइट कलर के कप प्लेट रखे हुए हैं और लाल कलर के मेट बिछे हुए हैं जिसके पास फोर्क स्पून --

और चाकू रखा हुआ है उसके अलावा यहां पर टिशु रखा हुआ है हैंड क्लियर करने के लिए --

पटरी पर खड़ी हुई नज़र आ रही है इसमें एक लाइट का खंभा लगा हुआ दिखाई दे रहा है।

ये एक गार्डन की तस्वीर नजर आ रही है इसमें एक सर्कल बना हुआ है जिसमें बहोत सारी मिट्टी पड़ी हुई है और बहोत सारे छोटे छोटे भाटे रखे हुए हैं।

ये एक मंदिर की फोटो नजर आ रही है जो की सफेद कलर का बना हुआ मंदिर है इसमें बहोत --

यह एक गार्डन की तस्वीर नजर आ रही है जहां पर एक सर्कल बना हुआ है जिसमें फुआंरे टाइप का कुछ बना हुआ है उसमें कुछ डिजाइन बनी हुई है लेकिन --

डिजाइन बनी हुई है और इसमें आर-पार का गेट लगा हुआ है और बहोत ही सुंदर घास लगी हुई है।

इसके बाहर छोटे छोटे बड़े बड़े पत्थर पड़े हुए हैं।

के अलावा यहां बहोत सारे कस्टमर खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं जिसमें आदमी औरत बच्चे सभी शामिल हैं।

ये एक नर्सरी का गार्डन दिखाई दे रहा है जिसमें बहोत ही छोटे छोटे पौधे हैं जो पन्नी में लगे हुए पड़े हैं।

ये किसी मिलने की जगह की तस्वीर दिखाई दे रही है यहां पर पीछे एक पुरानी हवेली टाइप का बना हुआ है।